एक गाड़ी जैसा नदी जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें बीच में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा-बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है नीचे --

बगल में तरबूज है और नीचे --

बहुत सारे फल लगे हुए हैं। एक बेच रहा है। फल में केला उला सब कुछ दिखाई दे रहा है जो फल होता है।

और एक ताड़ भी है पोल भी है।

अच्छा जिम में बोहोत सारे सामान रखे हुए हैं | बोहोत सारे लाइटे लगी हुई हैं। नीचे सू पहना हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट है जिसमे बोहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं। डेकोरेशन भी काफी अच्छा लग रहा है।